तो यहाँ हमें एक चर्च का इंटीरियर दिख रहा है जो कि स्टेचू जो है वो दिख रहा है एक-बे -जीसस है एंड मदर मैरी का मदर मैरी जो है वो जीसस को गोद में लिए हुए हैं।

एक ड्राई-क्लीनिंग शॉप की इंटीरियर का हमें सीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो ओनर या जो काम करने वाले हैं वो काम पर लगे हुए हैं ड्राई-क्लीनिंग के लिए।

जिम का एक सीन हम यहाँ पर देख सकते हैं जिस पर एक बंदा जो हैं वो कसरत में लगा हुआ हैं बाजू में थ्रेडमिल देख सकते हैं मेवेटलेफ्टिंग के सामान देख सकते हैं।

जेट्टी का एक सिन हम देख पा रहे हैं यहाँ पर और किसी नदी के किनारे की जेट्टी है जहाँ तक ये समझ में आ रहा है देख के और प्रोबैब्ली कहीं दूर एक प्लेन उड़ता हुआ नजर आ रहा है।

और आस पास की बाउंड्रीस से पता चलता हैं की ये कोई पब्लिक स्विमिंग पूल है।

सदर अस्पताल गोपाल गंज का सीन हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कि काफी देखने में काफी पुराने समय से चलता आ रहा प्रचलित और वेल मैनटैनेड अस्पताल लग रहा है जिसके पॉपुलैरिटी भी अभी बरक़रार है क्योकि काफी सारी गाड़ियाँ भीड़ भाड़ लगी हुई--

अपने टेस के अकॉर्डिंग वेराइटीज है यहाँ पे । रोहू कातला देन मृगल एण्ड कैटफिश वगैरह भी है डॉग फ़िशेस भी है यहाँ --